नीचे कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। आजू- बाजू कुछ सामान रखा दिखाई दे रहा है। वाइट कलर की कार दिखाई दे रही है।

ना दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक टीन का शेड डला छत बना दिखाई दे रहा है।

एक हॉल दिखाइ दे रहा है। हॉल में कुछ सामान रखे दिखायी दे रहे हैं। और एक पर्दा टंगा दिखाइ दे रहा है जिसका कलर रेड दिखाई दे रहा है और आजू बाजु कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

घर दिखाई दे रहा है घर के सामने एक रोखड़ रोड दिखाई दे रही है लाइटिंग लगी दिखाई दे रही है बहुत सारी लाइटिंग लगी दिखाई दे रही है।

यहाँ एक लड़का खड़ा दिखाई दे रहा है जिसके हाँथ में कुछ दिखाई दे रहे हैं | कुछ सामान रक्खा दिखाई दे रहा है | नीचे कुछ सामान पड़े दिखाई दे रहें हैं और उप्पर हाइवे दिखाई दे रहा है --

वाइट कलर का आसमान दिखाय दे रहा है। और कुछ लोग खड़े दिखाइ दे रहे हैं।

यहाॅं एक घर दिखाई दे रहा है। घर के आस पास कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ सामान रखे दिखाई दे रहे हैं और पीछे कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मध्यप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण लिखा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बोर्ड लिखा दिखाई दे रहा है।

एक मशीन रखी दिखाई दे रही हैं। ब्लैक कलर का एक कचरादान रखा दिखाई दे रहा है अ कुछ बिजली की तारे रखी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ एक बैनर दिखाई दे रहा है बैनर के पीछे कुछ लिखा दिखाई दे रहा है। कुछ सामान रखे दिखाई दे रहे हैं।